ब्लू टी-शर्ट पे है और एक रेड पे शर्ट पे है। ये अपना सब लोग प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं। तैयार करके अपना टीचर को दिखाएं --

डॉक्टर उसको मशीन से सेकईंयां कर रहे हैं।

एक आदमी टावर पे खड़ा हुआ है अपना सेल्फी ले रहा है और स नीचे पथराव का कुछ है और --

इसको निकालने के बाद नाव चलने लगेगी और एक आदमी चश्मा लगा के है और अपना लेज़ूर से सब काम कर रहा है।

गर डेरी और यहां पे सब दूध वगेरा पनीर वनीर यहाँ पर सब मिलता है। बाहर बाइक भी खड़ा है। एक लेडीज --

और छोटी छोटी यहाँ खम्बे पे बल्फ लगा हुआ है।

देखिये यह योगा सेन्टर हैं। यहाँ पे सब लेडीज़ जेंट्स योगा सीखने के लिए आता --

बोहोत बड़ा और यहाँ पे भी हरी घास दिख रही हैं और दो महले का मकान हैं और बॉउन्ड्री भी हैं।

और फीलिप्स लिखा हुआ है सोनी का अ --

फ्लैट में और थ्री बच्चें फोर हैं और यहाँ पे लेडीज़ भी हैं।

नीति करने के लिए अपना मराठी में पहन के आए हैं क साडी पहन कर आए हैं। बाल में गजरा वजरा लगा के आए हैं।

अ मनाने के लिए यहाँ पे आए हैं। स्टेज पे हैं और यहाँ पे सब एक तरफ लेडीज़ हैं एक तरफ जेन्ट्स खड़े हुए हैं। लाइट भी जल रही है।